फेवीक्विक भी है इस रैक के ऊपर बहुत सारे समान भी हैं।

और इस टेबल पे तीन लैपटॉप पड़े हुए हैं और दो लड़की और एक लड़की लैपटॉप चला रहे हैं।